रेल्वे स्टेशन है यह रेल्वे स्टेशन काफी बड़ा है यह रेल्वे स्टेशन में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं यह रेल्वे स्टेशन में बहुत सारी पटरियाँ खली हैं यह पटरियाँ पर बहुत सारे ट्रेन आती-जाती हैं यहाँ पर बहुत --

बहुत सारे आदमी बाल कटाने आते हैं नाख़ून छुआने आते हैं एवं दाढ़ी बनाने भी आते हैं।

पार्क है इस पार्क में बहुत सारे खेलने की सामान है एवं झूले हैं एवं बहुत सारे की भी सामान रखे गए हैं ।

यह हाथों में डमरू है यह डमरू यह भोले बाबा अपने हाथों में रखते हैं इनके गले में तुलसी का माला --